और मौसम धुंधला दिखाई दे रहा--

और दीवारें जिसे दीवारों के ओर लकड़ी के--

की कुर्सी टाइप के झूलों किस बने हुए जिसमें--

जेंट्स खडे हुए है जहां पर--

चारों तरफ चार चार पांच खंभे वगैरा और सोफे दिखाई दे रहे हैं जिन पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और साइड में एक रैक खड़ी--

वगैर हॉस्पिटल सा दिखाई दे रहा है।

और जिम का सारा सामान रखा हुआ है और--

स्वर ग्रामीण बैंक दिखाई दे रहा है जहांआ जाकर--

बहोत सारी ऑटो खड़ी हुई है ओर एक पुल --

सूट डांगरी वगैरा सभी प्रकार के बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक भट्टे भट्ठा टाइप का एरिया दिख रहा है जिसमें चिमनी वगैरह और साइड में मिट्टी बहुत सारी मिट्टी के ढेर--

बहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा है जिसमें दो दरवाजे लगे हुए एक ब्लैक कलर का और--

लंबी खड़ी होकर ऊपर हाथ करके--

घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे--

दिखाई दे रही है जैसे शोरूम अलग अलग चीजों की दुकानें दिखाई दे रही है।

और जैसे बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जैसे वह पेन व्हाइट और रेड कलर का पेन --

इसमें और टॉयज दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें--

मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ना नया व्यायाम--

साइकिलों का ब्लू रेड कलर और ऊपर एक छत के ऊपर कुछ लाइटें वगैरह जलती हुई दिखाई दे रही है।